यहां पर काफी सारी चट्टाने बने हुई है यहां पर एक चट्टान है जिसके बीच में काफी सारी जगह थी वहा पर दो आदमी खड़े हुए होंगे और एक आदमी ऊपर खड़े हुए है और दो आदमी जो अंदर--

में उसमे से एक ने अपने हाथ में रेड धागा बंद रखा है और हाथ में रिंग पहने हुए है कुछ बड़ी चट्टाने है यहां कुछ छोटी चट्टान है।